इस फोटो में एक लड़का खड़ा हुआ जो चेक शर्ट पहना हुआ हाथ में घडी है पॉकेट में उसका हाथ है आधे-आधे ब्लू कलर के उसने शूज पहने हैं।

मुझे यहाँ पे दो बिल्डिंगस दिख रही हैं एक वाइट कलर की एक पिंक कलर की एक दरवाजा के ऊपर --

एक अंकल के सर पे बाल नहीं है और डंडे पे कुछ कपड़ा-वपड़ा भी लटक रहा है और एक बॉक्स भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक अंकल नर्सरी में खड़े हो के कई सारे पेड़-पौधों के पीछे से अपना फोटो क्लिक करवा रहे हैं और पीछे ब्लू और--

ये एक जिम का जो फंक्शन होता है सेमी फाइनल और ट्रॉफी रखी हुई हैं चार छे सात बैलून से डेकोरेट किया है मिक्की माउस भी बना हुआ है।